और बगल में भी छोटे-छोटे कुछ लगे हुए हैं बोट के टाइप जैसा और बगल में एक खिड़की है। बाहर धूप खिली हुई है। ऊपर --

गल्स भी हैं इसमें बॉय भी हैं।

और काफी बड़ा गेट है और गेट खुला है।

आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट हैं। प्लेट में ग्रीन चटनी दिखाई दे रही और कुछ डिशेज हैं।

रोड एकदम खाली हैं सुनसान जगह है।

यहाँ कांच पे लिखा हुआ हैं फोर जी और अंदर डेस्कटॉप दिख रहे हैं।

और ढेर सारे कलर्स में शूज़ दिखाई दे रहे हैं।

बहोत ही सुंदर दिख रहा हैं यहाँ का बैकग्रॉउंड ।

और बहोत ढेर सारा पेड़ भी हैं। तालाब के बगलो बगल में और बोहोत ही हरियाली हैं।

आप देख सकते हैं ये दुकान है। दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। कपड़े का दुकान है।

जो कि सर्दियों का सीजन है। ये लोग स्वेटर शूज और कान बांधकर हैं। साइकल दिख रहा है। .